कांटा दिखाई देता है की कितना जीरो जीरो वन से आपको कितना-कितना पेट्रोल का डलवाना है यहाँ पे यहाँ कांटा दिखता है एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ --